पानी का रंग सफ़ेद नजर आ रहा हैथोड़ी हल्की -हल्की पानी में कजी दिखाई दे रही है कजी का रंग--

यहाँ पर एक माताजी की झांकी दिखाई दे रही है जिसमें सुंदर एक माता बैठी हुई है उन्होंने माथे पर लाल से चुनरी पहनी हुई है ऊपर--

जो की सफ़ेद रंग की नजर आ रही है नीचे मिट्टी नजर आ रही है मिट्टी का रंग काला--

सुनने नीले रंग का है एक ऐप्रिन पहना हुआ है वह कुर्सी पर बैठा हुआ है कुर्सी का रंग लाल नजर आ रहा हैं।

गुमंद आकार दिखाई दे रहा है नीचे जमीन नजर आ रही है जिसका रंग भूरा नजर आ रहा है।

समसंग गैलैक्सी मोबाईल की दुकान दिखाई दे रही है इसमें लाइटे लगी हुई है लाईटो का रंग लाल पीला नजर आ रहा हैं ।